इस तस्वीर में यह दिखाई दे रहा है की यह एक हेल्थ क्लब है।

इस तस्वीर को शाम के वक़्त हेल्थ क्लब के बाहर से खींचा गया है हेल्थ क्लब के निचे कई सारी गाड़ियां भी रखी गई हैं।

इसके पास एक शादी का मंडप भी सजाया गया है।

इस तस्वीर में यह दिखाई दे रहा है।

कमरे के अंदर एक कुर्सी एक टेबल और एक दौड़ने की मशीन रखी गई --।

होटल के बाहर कई सारे लोग की आना जाना लगी रही है।

इस तस्वीर में यह दिखाई दे रहा है यह एक हॉस्पिटल की तस्वीर है।